यहां शावल लगे हैं पानी ऊपर की ओर जा रहा है।

एक आदमी खड़े है जो देख रहे है पढ़ रहे ऊपर की ओर --

आसपास धूप है। वो लोग छाये में बैठे हैं। चार दोस्त लग रहे हैं। सब आपस में बातें कर रहे हैं।

साइकिल्स खड़ी हैं और ये लोग बैठे हुए हैं।

दिखाई दे रही कि बालकनी बनी है।

यहां एक रोड का फोटो है।

पीछे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं।

यह एक मॉल या फिर शोरूम का फोटो लग रहा है।

वूमेंस के स्टेच्यू खड़े हैं।

लाइब्रेरी का फोटो लग रहा है जिसके ऊपर लिखा है लाइब्रेरी शायद अंदर सब लोग पढ़ रहे हैं।

और अंदर चेयर्स पड़ी हैं बहोत सारी।

बहुत सारी लड़कियां डांस करने जा रही है नीचे ग्रास है।

एक येलो कलर की लड़की है सामने आईना लगा है ये बच्चे सब शीशे में देख रहे हैं।

यह एक गार्डन जैसा लग रहा है यहां पिंक कलर के गुलाब है।

व्हाइट कलर के गुराब हैं उसके पत्तियां लगे हुए हैं। पिंक कलर के गुलाब है उसमें पत्तियां लगी हुई हैं। ज़मीन हैगी और साइड में घ --

आस पास शीशे लगे हैं क्रीम कलर के टाइल्स लगे हुए है।

उसके साइड में छोटा सा कैमरा लगा हुआ--

और एक आदमी खड़े हैं दो वुमेन खड़ी हैं वो फोन चला रही हैं।

एक मून है जो बहुत अच्छा लग रहा है एक कटोरे के जैसे डिजाइन का कुछ प्लेस है सामने दिख रहा है लाल जल रही हैं।

यहां कोई शॉप का फोटो लग रहा है यहां पिंक वाइट और ब्लू कलर की कुछ चीजें रखी हुई हैं यहां--

ये रोड का फोटू लग रहा है।

पीछे एक येलो टी शर्ट पेहने आदमी खड़े हैं उनके पास एक महिला खड़ी है।

और मछली कैरट के अंदर भी हैंगी मछली उसकी जमीन पर भी रखी है यह आदमी मछली बेच रहे हो हैंगे।

जीने को दो जीने बने हैं बाकी उसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं।

उसके ऊपर ऑरेंज पेंट हुआ है बाकी सब पेड़ दिख रहे हैं।

और बहुत सारे लोग पेट्रोल डला रहे हैं।

वहां एक्सरसाइज हो रही है।

बहुत सारे आदमी एक्सरसाइज कर रहे हैं।

एल_सी_डी लगी है बहोत बड़ी उसके ऊपर सेटअप बॉक्स रखा है उसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है।

यहा जिम वाली साइकिल खड़ी है।

एक साइड पे ऑरेंज कलर का पेंट हुआ है। एक साइड पे ग्रे कलर का पेंट हुआ है। नीचे वाइट कलर की जमीन है।

और साइकिल रखी हैं जिम वाली।

यह एक धार्मिक प्लेस है या फिर मंदिर के जैसा कुछ लग रहा है।

साड़ी पहने उनके साथ एक आदमी खड़े हैं दो आदमी है जो कोट पहने हैं।

खूबसूरत नजारा है पेड़ लगे हुए हैं आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं।

आस पास बाइक खड़ी हैं लोग खड़े हैं।